यह एक सफेद रंग का बड़ा सा घर है जिसमें भूरे रंग के खिड़कियां सटर लगे हुए हैं।

पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे--

महिला तथा व्यक्ति आते जाते दिख रहे--

यहां पर ऊपर की छत सफेद रंग की है तथा उसपे पंखे लगे हुए है।

जिन्होंने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं एक बच्चा भी है कुछ व्यक्ति हैं लाइटे लगी --

बाहर की तरफ कुछ गमलों में पेड़ पौधे रखें हैं।

ऊपर ईंटे रखी गई है यहां पर कुछ नीचे रेत कुछ सीमेंट और कुछ सामान पड़ा हुआ दिख रहा--

यह पीले रंग का बड़ा सा कमरा है जिसमें ऊपर की तरफ से लाइट आ रही है।

ये पीछे की तरफ कुछ पेड़ पौधे हैं एक दीवार है बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं।